यह दृश्य किसी शॉप का है। जिसमें फ्रीजर के अंदर बहुत सारे केक नजर आ रहे हैं।

फ्रीजर के सामने का गेट शीशे का बना हुआ है।

यहां सामने की ओर कुछ हैंगर है तथा हैंगर पर कुछ सामान बना हुआ दिखाई दे रहा है इसमें सामने की ओर मेन गेट हैं।

ये दृश्य किसी मंदिर का लग रहा है जिसमें सामने की ओर एक काफी बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है।

इसमें कूड़ा दान भी दिखाई दे रहा है तथा सामने की ओर दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इनमे पीछे की दीवार जो पेंट की हुई है वो पिंक कलर की है।

जिसमें सामने की ओर एक फोर व्हीलर दिखाई दे रही है।

इस बिल्डिंग के सामने एक फोर व्हीलर खड़ी हुई है तथा रोड पर बहुत सारे लोग आते जाते नजर आ रहे हैं।

ये दृश्य शायद किसी जंगल या खेत का है जिसमें सामने की ओर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पर सामने की ओर तीन व्यक्ति हैं तथा दो तख्त दिखाई दे रहे हैं।

इसमें दोनों और बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं तथा ये लोग किसी टूटे हुए पत्थर पे खड़े हुए हैं।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

यह दृश्य किसी रेस्टोरेंट का है जिसमें ऐसा लग रहा है कि किसी ने खाना खाया हो--

इसके बगल में एक पानी की बोतल भी दिखाई दे रही है तथा एक टेबल भी है।

इसमें पीछे की ओर एक दीवार है जो पत्थरों को काट कर ही बनाई गई है।

तथा पीछे की ओर बहोत सारे कलम लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।